इनके कोने कोने में बहोत सारा पौधा भी निकला हुआ है।

जमीन पर एक काला कलर का चेयर भी रखा हुआ है चेयर के सामने सफेद कलर का कुछ बकेट भी दिख रहा है।

पीठ पे बेग भी हुआ है थोड़ी सी दूर में बहुत ऊंचा था पहाड़ भी दिख रहा है।

डोर मेट के कोने कोने में कुछ पौधा भी लगा हुआ हुआ है।

यह फोटो में मुझे दो टेंट दिख रहा है दोनों टेंट का रंग ब्लू कलर का है।

सभी इंसान नदी में डुबकी लगाकर खड़े होकर है।

इस फोटो में मुझे एक फार्मेसी नजर आ रहा है यह फार्मेसी के अंदर बहुत सारे दवाई भी रखा हुआ है।

सामने एक बड़ा सा पिलर भी दिख रहा है पिलर में बैडमिंटन का रैकेट भी लगाया हुआ है।

चेयर्स के पीछे लाल कलर से डेकोरेशन करके रखा हुआ है।

जमीन पर बहुत सारे इंसान भी खड़े होकर हैं।

स्टैचू के कोने में कुछ छोटे छोटे पौधा भी निकला हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक कैफे रेस्टोरेंट दिख रहा है।

ये गाड़ी का रंग सफेद कलर का है कोने में कुछ इंसान भी दिख रहा है।

एक बिल्डिंग का रंग येलो कलर का है और एक बिल्डिंग का सफेद कलर का है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारा लड़कियां नजर आ रहा है सभी लड़की ने लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ है।